यहां पे ये बैलून बहुत ही मजबूत होती हैं। यहां पे एक ग्रीन कलर की एक रेड कलर की बैलून रखी हुई है और एक ब्लैक कलर की भी गेर बैलून रखी हुई है ।यहां पे शीशा की कुछ तस्वीरे।--

यहां पे एलीफैंट के साइड में एक बड़ी सी अ हरी भरी गाछी है जो की बहुत ही आकर्षित करने वाली जगह है यहां पे मिट्टी उट्टी रखी हुई है जो की बहुत ही अच्छी है।

जिसमे की बहुत ही अच्छी तरह से यहां पर डेकरैशन की हुई है। और कुछ कुर्सिया भी लगी हुई है। यहां पर लग रहा है की इसमे बारात आने--